यह एक मकान का फोटो ।

यह कुछ छात्र है आई_टी_आई के ये मास्टर इनको--

और पीछे सफेद कलर का पर्दा लगा है उसके पीछे रेड कलर का भी --

भक्त नीचे बैठे हैं पगड़ी पहन कर सफेद कलर का बनियान पहनकर।

भगवान की तरफ तस्वीर एक किसी के तस्वीर में पंडित भी बैठा हुआ है।

और उसपे चार्ट जिलेट वगैरा भी रखी हुई है।

और दीवार पर एल_ई_डी भी लगी हुई है और लाइट भी लगी हुई है अंदर।

एक आदमी इसको ठीक कराने पाइप जा रहा है पीछे कुछ सामान रखा है केनी रखी है पाणी पाणी की पाणी रखी है।

एक गुरुजी बैठे हैं भगवा कलर के एक लीले कलर में आदमी रहा है।

हो रही है बीच में कुछ डांस कर रही है लड़की।

पटाखे और लाइट जल रही है। उस --

यह चार कलर कीया कुर्सियां रखी हुई हैं।

और एक भी खड़े हुए हैं।

और नीचे एक बाल्टी भी रखा है एक आदमी भी खड़ा हुआ है।

सफेद कलर की पीछे पीछे एक परत सी है।

पेटियां सफेद कलर की हो रही है।

एक थैली धरी है शैंपू धरे है च आटा धरा हैं चावल धरे हैं घी धरे हैं।

कुछ अनेखे के सामान धरे हैं।

दीवार में लगाने के लिए --

ऊपर गेट लगाया जाता है पीछे लोहे की--

बीच में एक लाइट लगी हुई है डंडे पर--

यह एक दुकान खुली हुई है बाइक भी खड़ी है सामने जी_टी रोड है।

उसके पीछे मशीन दीख रही है। एक आदमी जिम कर रहा है एक आदमी परे कर रहा है बैठ के।

लक्कड़ रखे हैं कुछ लकड़ों में सुराख हो रहा है वो लकड़ी लाल कलर की --

आदमी सफेद शर्ट में खड़ा हुआ है पीछे।

आदमी खड़ा है सामने नीले गेट है ऊपर फेड़ खड़ा हो--

और नीचे थुन्नी वगैरा भी पड़े है।

कुछ देवता से बने हुए हैं या औरत--

यह एक महिला जा रही है छतरा छाता लेकर।

यह एक हॉस्पिटल की बेंच है जिस पर--

हे एक मकान है मकान के बाहर--